यह चित्र एक रोड का है यहां बहुत सारे ऑटो दिख रहे हैं दो पहियों वाहन दिख रहे हैं।

जिसमे कुछ होली का कार्यक्रम हो रहा है जहाँ ऊपर कैमरे लटके हुए है हा एक औरत खड़ी है रंग-बिरंगी साड़ी पहन के आदमी खड़े हुए है ।

यह चित्र एक तालाब की है जहाँ आसमान दिख रहा है बीच मे एक अ कुछ पत्थर का रखा हुआ-- है।

एक आदमी कुछ काम रहा हैं एक लड़का ऊपर बैठा हैं तार ही तार दिख रहे हैं लकड़ी का ढांचा दिख रहा है।